इस चित्र में एक गली दिखाई दे रही है गली में एक दुकान के बाहर पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ टेबल कुर्सी दिखाई दे रही है टेबल कुर्सी के ऊपर --

चित्र में एक अ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और बिल्डिंग के ऊपर अ-अ सफेद कलर लगा हुआ हैं और अ-अ एक अ बोर्ड लगा दिखाई दे रहा हैं बोर्ड पर कुछ नाम लिखा हुआ हैं ई सम्राट फेमिली रेस्टोरेंट करके।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है कुछ अ बड़े-बड़े पेड़-पोधे दिखाई दे रहें हैं और कुछ अ सूखे हुए प-पोधे दिखाई दे रहें हैं और कुछ छोटे छोटे हरे पत्ते --

टेबल दिखाई दे रही है टेबल की बाजू में कुर्सी है टेबल के ऊपर अ-एक सिगड़ी है और अ गंज दिखाई दे रहा है और यहाँ सब्जी का गंज है कुछ टिफिन डब्बे दिखाई दे रहे हैं धन्यवाद।

और दो पहाड़ी के बीच में से एक अ-नदी बहती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ एक झरना है जो पानी बह रहा है धन्यवाद।

क्युकी काफी सारे बच्चे निच्चे आसमान पर बैठे हुए हैं ओर व्यायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं है है है धन्यवाद।

और अ एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है और नदी को पुर है धन्यवाद।